छवि में हमे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है।

यह चित्र में हमें कुछ मैट जैसा दिखाई दे रहा है जो एक दूसरे के साथ लगा हुआ है।

यह चित्र में हमें एक हाथी दिखाई दे रहा है।

उपर दिए गए छवि में हमे एक तालाब जैसा दिखाई दे रहा है।

में बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

यह चित्र में हमें कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेड़ पौधे हमें नजर आ रहे है।

लोगों के मुंह ब्लर किए हुए दिख रहे हैं।

में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो जमीन में हैं।

छोटे छोटे पौधे भी हम देख सकते है।

हमें कुछ बास दिखाई दे रहे हैं जो मिट्टी पर पड़ा हुआ है।

में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो काम कर रहे हैं।

हमें ए_सी और फैन नज़र आ रहे है।

कुछ बिल्डिंग हमें दिख रहे हैं।

कुछ लोग के मुंह में मास्क मारा हुआ है।